नमस्कार दोस्तों more on functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम
कुछ उदाहरणों की सहायता से निम्न सीखेंगे
function के लिए एक आर्ग्युमेंट को पास करना
function में local variable को परिभाषित करना और
फंक्शऩ में global variable को परिभाषित करना
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system और
gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
पहले सीखते हैं कि function के लिए argument को कैसे pass करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं
मैं function _ underscore parameters sh file खोलती हूँ
यह shebang line है
हमारे function का name say _ underscore welcome है
open curly bracket function definition खोलता है
$dollar 1 पहला positional parameter है
$dollar 2 दूसरा postional parameter है
close curly bracket function definition को बंद करता है
यहाँ function say _ welcome arguments के साथ कॉल होता है
syntax है function name जो कि double quotes में आर्ग्य़ुमेंट के बाद say welcome है अर्थात bash और learning
समान तरीके से manner भिन्न arguments के set के साथ समान function को कॉल करूँगी अतः manner bash है say _ welcome space double quotes में functions in space और double quotes में bash
file को सेव करें और terminal पर जाएँ
type करें chmod space plus x space function underscore parameters dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash function underscore parameters dot sh
enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि positional parameters function में passed किए गए arguments द्वारा प्रतिस्थापित थे
dollar 1 $1 string bash द्वारा और dollar 2 $2 learning के साथ प्रतिस्थापित था
फिर से dollar 1 $1 functions in द्वारा और dollar 2 $2 bash के साथ प्रतिस्थापित था
bash में variables को local variables और global variables के रूप में घोषित कर सकते हैं
local variable:
इसकी value function में मान्य होगी जहाँ ये परिभाषित किया गया है
local variables को कीवर्ड local का उपयोग कर घोषित करते हैं
global variable
global variable की value को पूर्ण bash script में accessed कर सकते हैं
function में variable को घोषित करने के लिए इन 2 तरीकों को सीखते हैं
function _ undescore local sh named file खोलें
यह shebang line है
function का name say _ underscore hello है
यहाँ variable first _ name local कीवर्ड के साथ घोषित होता है
इसका अर्थ है कि इसकी value केवल function say _ hello में मान्य होगी
variable जिसे बिना कीवर्ड के घोषित किया गया है global variable के रूप में समझा जाता है
अतः variable last _ name को पूर्ण script में accessed किया जा सकता है
इस echo line में हम variables की value प्रदर्शित करेंगे
first _ name
middle _ name और last _ name
इसके बाद हम function बंद करेंगे
अब यहाँ variable middle _ name बिना कीवर्ड के घोषित किया गया है अतः इसकी value पूर्ण script में global होगी
एक बार फिर से हम यहाँ function को कॉल करेंगे
हम इस function कॉल के लिए दो arguments pratik और patil pass करते हैं
ये echo statements variables की value को प्रदर्शित करेंगे
$first _ name $middle _ name और $last _ name
कृपया ध्यान दें कि variable first _ name local variable है
file सेव करें और terminal पर जाएँ
type करें chmod space plus x space function underscore local dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash function underscore local dot sh
enter दबाएँ
output की पहली line message hello pratik k patil प्रदर्शित करती है
यहाँ variable first _ name जिसकी value pratik है local है
जिसका अर्थ है कि value function के लिए सीमित है
अब देखते हैं कि local variable function के बाहर कैसे कार्य करता है
यहाँ first _ name में कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता है
यह इसलिए क्योंकि first _ name की value function के लिए local है और यह function के बाहर उपलब्ध नहीं है
middle _ name और last _ name printed होते हैं क्योंकि वे global variables हैं
आशा है कि इनके बीच का अंतर आप समझ चुके होंगे
अब संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
कुछ उदाहरणों की सहायता से function के लिए arguments को pass करना
function में local variable को घोषित करना function में global variable को घोषित करना
नियत कार्य के रूप में
एक program लिखें जहाँ function दो arguments को स्वीकार करता हो function दो arguments को multiply गुणा करना चाहिए
arguments 12 23 और 34 के साथ 3 function calls बनाएँ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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद